जिसने मैरून कलर की टी शर्ट पहने काले रंग की टोपी पहने काले रंग की पैंट पहने बैठा है।

जिसके ग्राउंड में ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं।

यह दृश्य एक फर्नीचर के बाहर की है।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

वहीं पे ऊपर ढेर सारी बिल्डिंग्स भी दिखाई पड़ रही है।

सामने में क्लीनिक के बाहर ढेर सारी कुर्सियां लगी हुई--

दृश्य में एक खाली मैदान है।

सीलिंग पे दो फैन लगे हुए हैं।

स्वीरे भी बनी हुई है।